यह एक मंदिर है। यह मंदिर काफी पुराना है। यह मंदिर बहुत पहले बनाया गया है।

यह डैम काफी बड़ा है। यहाँ पे लोग घुमने आते हैं। यह डैम में मछली पालन भी किया जाता है।

यह एक डैम है। यह डैम बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे लोग घुमने आते हैं। यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है। यहाँ पे बोटिंग की भी सुविधा है। लोग यहाँ पे बोटिंग करते हैं।

इस सेंटर में बहुत अच्छे शिक्षक है जो बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे रोज़ ट्यूशन पढ़ने आते हैं ।

ऑटो टेम्पू टोटो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं जिससे लोग --